यहाँ पे एक लेडी दिख रही हैं बहुत सारे स्क्वायर्स में अलग-अलग छोटे-छोटे अ टेंपल्स वगैरह हैं ।

बजा रहे है वगैरह कोई परफॉर्मेंस दे रहे है।

ये इमेज में एक टी_वी का--

और पीछे बिल्डिंग्स वगेरा नज़र आ रहे है।

थोड़े ऊपर टंगे हुए प्लांट्स है थोड़े जमीन पे रखे हुए प्लांट्स हैं फ्लावर --